एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है कुछ कांच दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।

यहाँ पर एक मशीन दिखाई दे रही है कुछ पोस्टर दिखाई दे रही हैं जिनका कलर --

ये और कई नाव दिखाई दे रही हैं जिनका कलर येलो ब्लू दिखाई दे रहा है यहाँ --

यहाँ पर यक प्रतिमा दिखाई दे रही है ज --

कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं जिनका कलर ग्रीन और --

ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन दिखाई दे रहा है और यहां पर आसमान का कलर ग्रे व्हाइट --

व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के फेन दिखाई दे रहे हैं कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रही है कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे है।

पर कुछ दीवार दिखाई दे रही है जिनका कलर ब्राउन और बालू दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ दुकान दिखाई दे रही है और कुछ बे --

एक लड़का दिखाई दे रहा है यहां पर एक आकृति दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू --